इसका छत व्हाइट कलर का है और टेबल और खंबे गुलाबी रंग के--

बिजली के खंबे नजर आ रहे हैं जिसमें तार लगी हुई है।

पुजारी इनकी पूजा कर रहा है ।

ये एक पेट्रोल पंप का चित्र है।

और पीछे की दीवार पे सफेद रंग से पेंट किया हुआ है।

गेट के बाहर बहोत सारी गाड़ी स्कूटी बाईक साइकल वगैरा पार्क की हुई है।

पे रेलिंग लगा हुआ है।

गेट लोहे की बनी हुई है और वो अंदर की तरफ खुल रही है।

दीवाल के दराज मे कुरान रखी हुई है।

एक बंदा खड़ा है जिसने लाल रंग का हाईनेक पहन रखा है और नीचे ब्लैक कलर का पैंट --

और एक पे ब्लू कलर का चादर बिछा हुआ है।

ये एक घर का चित्र है जहां पे रंग बिरंगी लाइट सजाई हुई है।

और घर के सामने में तो केले का खंभा रखा हुआ है।